चित्र में मुझे एक ऑटो खड़ी हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे गेट बंद दिख रहा है।

पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा हैं।

और कुछ बोर्ड वगैरह भी रखे हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारे गुड्डे दिख रहे है।

चित्र में मुझे एक रोड दिख रही है।

चित्र में मुझे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

चित्र में मुझे कई सारे आदमी दिखाई दे रहे है।

और शॉप की ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है डी_टी_डी_यस का--

चित्र में मुझे कई सारे लोग बैठे रेलवे स्टेशन पर--

चित्र में मुझे लाल फूल दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक डिब्बा दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है।

खड़ी दिख रहे हैं चित्र में मुझे एक--

चित्र में मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई दिख रही हैं।